सामने एक रोड दिखाई दे रही है यहाँ से एक कार जाती हुई दिख रही है और बीच में डीवाईडर दिख रहे है।

और ये दिन का समय है धुप निकली हुई हैऔर साइड में कुछ बिल्डिंग और दिखाई और वहाँ सामने मोटरसाइकिल ।